आदमी इधर उधर चल रहे हैं दुकान के अंदर भी इंसान हैं।

जो सुधा पार्लर है उसकी सामने तीन चार आदमी खड़े है।

अंकल जी और एक आंटी जी है जो कि सामने की ओर देख रहे है।

और सामने एक चायपत्ती का डब्बा है और सामने एक इसके तर--

इसमें सामने लाल रंग के डब्बे रखी हुए है।

लाल रंग के डब्बों के ऊपर चॉकलेटी रंग के डब्बे रखे हुए है।

इसकी परली साइड को एक नीला घर भी दिखाई दे रहा है इसके सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है।

जोकि लाल रंग का है इसमें सफेद रंग से लेनेवो लिखा हुआ है।

यहाँ पर एक आदमी हैं। ये मकॅनिक हैं।

इसने गाड़ी को ऊपर उठाया है।

मंदिर है मंदिर के अंदर भगवान है और लोग भगवान के दर्शन करके--

आप यहां पर एक बहोत ही मनमोहक दृश्य देख सकते हैं पीछे खुला आसमान दिखाई दे रहा है।

जो कि बादलों से घिरा हुआ है।

आप यहां पर एक बहोत ही लग्जरी दुकान दे सकते है।